यहाँ पर एक हॉस्पिटल है और जो कि हाउस में ही है एक बिल्डिंग है जिसके नीचे अ एक हॉस्पिटल है बच्चों का हॉस्पिटल है।

यहाँ पर एक स्टेडियम बना हुआ है जो की यह अभी खाली है स्टेडियम और जो की ग्रीन कलर उसे पेंट किया गया है ग्रीन और ऑरेंज कलर के उससे उसे पेंट किया गया है स्टेडियम --